और पीछे तलाब जैसा नजर आ रहा है बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे डेकोरेशन हुई है ऊपर।

सामने तिरंगा फहरा रहा है। बिल्डिंग हैं बड़ी-बड़ी जिसमें खिड़कियाँ लगी हुई हैं बनी हुई हैं और सामने दो टीचर्स भी नजर आ रहे हैं।